ये एक कैंटीन है जहा पर सीढ़ियों के ऊपर जाकर है।

ये बंद पड़ी हुई है इसमे एक विंडो भी लगी हुई है।

एक बैनर लगा हुआ है वाइट कलर का उस पर कुछ खाने के आइटम बने हुए है।

ये एक हिस्ट टोरिकाल बिल्डिंग है।

सामने साइकल्स खड़ी हुई हैं और कुछ बाइक खड़ी हुई हैं।

यहाँ एक खजूर का पेड़ है और साइड में एक पत्थर पड़ा हुआ है ।